यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं।

और कुछ लेडीज भी खड़ी हैं।

एक लाल कार खड़ी है रोड के किनारे।

जहाँ पे गिटार रखे हुए हैं।

फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है।

यहाँ एक शूज़ की शॉप है।

जहाँ पे बहुत तरह के जूते रखे हुए हैं।

कुछ लोग काम कर रहे हैं।

और लाइट भी लगे हुए हैं।

कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं।

खिड़की भी है दो चार--

जहाँ पे बहुत सारे ऑटो रिक्शा लगा हुआ है।

जो कि तीनों बैठे हुए हैं।

बहुत से लोग खड़े हैं बैठे भी हैं।

स्कूटी लगी हुई है।

एक आदमी भी है जो खेल रहा है।

एक लड़की बैडमिंटन खेल रही है।

बहुत पुराना जहाँ दो व्यक्ति खड़े हैं।

एक आगे की ओर मुँह करके खड़े हैं।

आदमी सीधे की ओर देख रहा है।

ये एक बहुत विशाल ब्रिज है।

पूल के नीचे पानी है बहुत गहरा।

जहाँ बहुत से बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं।

माइक में बोल रहा है।

कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।

जहाँ की बहोत प्रकार के किताबें रखे हुए हैं।

साइड में चप्पल रखी हुई है।

ये एक बड़ा सा हॉल है।

एक बड़ा सा घड़ी भी टंगी हुई है।

पानी बहुत गहरा भी लग रहा है।

बहुत सारे लोग खड़े हैं।

जहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

जिसमें बलून का कलर लाल है।

ब्लू है वाइट है।

यह एक रोड साइड की तस्वीर है।

और बिस्कुट मिक्सर चॉकलेट --

जहाँ पे टेबल लगा हुआ है।

बहुत से लोग आते जा रहे हैं।

यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

कुछ अंदर सामान रखा हुआ है।

नल के पास बैठने के लिए कुछ बना हुआ है।

सामने एक बाथरूम भी है।

यहाँ बहुत से लोग खड़े हैं।

कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बातें कर रहे हैं।

कुछ चेयर पे लोग बैठे हैं ।

एक बाइक है जो सामने की ओर आ रही है।

तो हम लगे हुए हैं।

एक लड़की भी खड़ी है।

बहुत सारे मिठाइयां हैं।

यहा एक गाड़ी लगा हुआ है।

जो फूल से सजे हुए हैं।

रिबन भी लगा हुआ है।

साइड में आइसक्रीम वाला है।

जिसके नीचे पानी है।

बादल दिख रहे हैं।

बड़े-बड़े पत्थर है।

दो बच्चे बैठे हैं।

जिसमें फ्लावर बहुत प्रकार के लगे हुए हैं।

साइड में बिल्डिंग है बहुत सारे।

रंग-बिरंगे है फूल की।

बगल में दो पोस्टर लगे हैं।

दो आदमी बैठे हुए हैं।

एक आदमी माइक में कुछ बोल रहा है।

यहां दो आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक मॉल की तस्वीर है।

तो एक है सामान ले रही है।

पीले और लाल कलर के --

कुछ फोटो है जिस पे माले चरे हुए हैं।

है उस पर है।

कुछ सफेद कलर के कारण--

कुछ लोग फील्ड में बैठे हुए हैं।

गाड़ी लगा हुआ है बहुत सारे।

गाड़ी पे धूल जमी हुई है।

कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

एक बोर्ड लगा हुआ है।

जिस पे ओपन जिम लिखा है।

एक आदमी नीचे की ओर देख रहा --

तीन ऊपर बैठा है लकड़ी के--

की नीचे की ओर इशारा कर रहा है।

यह एक शादी की तस्वीर है।

आदमी है कुछ खा रहे हैं कुछ चल रहे हैं।

जो कि फूलों से सजा है।

ये एक पार्क की तस्वीर--

जिसमें दो स्त्री है।